एक नदी है जिसमें एक तीन लोग नाव पे बैठके जा रहे हैं। तीन नाव को तीनों च चला रहें हैं। दो आदमी एक बीच में बैठी हुई है लेडीज और उधर और एक नाव है दो और ज जंगल से घिरा हुआ है ये नदी चारों आस आसमान नीला है।